एक यहां पर सफेद रंग की कार है।

खड़ा हुआ है उसमें एक लड़का भी बैठा है।

घास और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।